बगल की तरफ एक दीवार है यहां पर पेंट ओंट भी दिखाई दे रहा है।

पंखा चल रहा है लाइट जल रही हैं बगल की तरफ एक दरवाजा है।

और यहां पर कुछ लोग हाथ में गिफ्ट भी लिए हुए हैं। और-

जैसा कुछ बना हुआ है ये एक डाइनिंग टेबल है।

ये कोई पुई प्लाजा है प्लाजा है यहां पर एक गाड़ी जा रही है यहां पर एक रिक्शा दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पंखे हैं।

और यहां पर कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं कुछ ट्रेनें आ रही है जा रही हैं।

यह यहां पर कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। यहां पर बगल की तरफ कुछ प्याले-

मिट्टी के बर्तन है लाइटें जल रही है।

टू हैंगर है यहां पर अंदर की तरफ बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं कुछ फोर व्हीलर गाड़ियां हैं कुछ आदमी दिखा रहे हैं।

दूसरी लाइटें जल रही है पंखे चल रहे हैं ऊपर की तरफ से--

ये यहां पर कुछ सीढ़िया दिखाई दे रही हैं।

यहां पर घड़ी लगी हुई है बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

सामने की तरफ एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है बगल में भी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है।

इस तरफ एक लोहे की रेलिंग लगी हुई है ऊपर की तरफ एक कैमरा लगा हुआ है। दरवाजे के साथ में--